यह फोटो में बस के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं बस के अंदर भी बहुत लोग खड़े हैं नीचे लाइन में लगे एक पुलिस मास्क पहन कर--

आ स्टैंड्स टाइप बनाये हुए है जिसमे बहुत सारी चीजे रखी हुई है जूस की बॉटल्स है ये साइड ऊपर साइड मैगी है।

कार खड़ी हुई दिख रही है वहाँ पे एक बाइक है बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है नारियल के उसके हरे-हरे लंबी-लंबी लकड़ियां है।

बैग लेके वहां खड़े हैं दूसरे स्टोर में यह अंकल जाते हुए बैग लेके खड़े जाते हुए देख रहै हैं।

बहोत टाइप के फ्रूट्स लगाए हुए है ग्रेप्स कलिंगड एप्पल ऑरेंज मैंगो --